ये पर्दा फिरोजी कलर का है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

दरवाज़ा पीले कलर का है जिसके अंदर लाइटें बहुत अच्छी लगी हुई हैं।

इसके अंदर बहुत सारी सजावटे हैं इसके अंदर बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक सुनसान एरिया दिखाई दे रहा है।

पानी भरा है और उसमें पानी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे पावदान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक सोलर लगाया हुआ है और उसके बगल में एक खंभा है।

काली कलर की ग्रील लगी हुई है और ये स्टेडियम बहुत बड़ा दिख रहा है।

हरे लाल पट्टी से इसका जाने का रास्ता बना हुआ है।

सामने एक पुतला खड़ा हुआ है जिसने नीले कलर की जींस और लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

सामने काफी लोग खड़े हुए हैं और बोरियां रखी हुई है उसमें फूलों कि पत्तियां बहुत सारी पढ़ी हुईं हैं।

और पीले कलर का इसमें नीचे के साइड में बैनर भी लगा हुआ है जिसमें एक लड़की भी छुपी हुई है।

बगल में ही एक नीले कलर का बैनर है जिसमें बंधन बैंक लिखा हुआ है।

कहीं कहीं पर सुखा है और कहीं कहीं पर बहुत सारा पानी है।

उसके आगे एक लड़का जो की टिशर्ट उतार कर गले में बांध कर खड़ा हुआ है।

और छोटे छोटे पौधारोपण वाले गमले बना रखे हैं वो भी ईंटों से।

एक पीले कलर का दीवार पर कलर करा गया है जिसमें प्रदीप ट्रेडर्स लिखा गया है।